खड़े हैं और पीछे में बहुत सारा डंबल रखा है और उनके पीठ के पीछे आईना लगा हुआ और आईने में --

भी अच्छा डिजाइन किया हुआ है लाइट वगैरह लगा है झालर लगा है ।

और ऊपर में बहुत तरह का खिलौना रखा हुआ है इधर कोना में बहुत सारा बार्बी डोल रख --

दिख रहे हैं और यहां पे कपड़े पर फिफ्टी पर्सेन्ट सिक्स्टी पर्सेन्ट काऑफ का सेल लगा हुआ है और --

ये बहुत बड़ा मैदान टाइप का है।